उसके बगल में बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने के तरफ एक उजले रंग का टेबल दिखाई दे रहा है।

पीछे के तरफ में कई सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

अगल बगल में बाउंड्री की हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ गाय के दो बच्चे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर बहोत सारे सुंदर सी लाइट लगी हुई है।

मंदिर के पीछे हमें एकाक बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घर भी दिखाई दे रहे है।

यह दृश्य में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

आदमी के बगल में कई सारे छड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य किसी रिपेयरिंग कार शॉप का दृश्य है।

यह दृश्य किसी दुकान का दृश्य है।

दुकान का नाम है गोस्वामी जी पावर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ।

यह दृश्य किसी डेंटल रूम का दृश्य है।

यहां पे सामने की तरफ ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

बगल में हमें छोटा सा रैक दिखाई दे रहा है।

एक पोस्टर पर लिखा हुआ है बिल पेमेंट और वगैरा वगैरा लिखा हुआ है।

यहां जमीन मिट्टी से बनी हुई है।

दूर के तरफ एक बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

तरफ में कई सारे वर्कर भी दिखाई दे रहे हैं।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

व्यक्ति ए_सी ए_सी में लगा रहा है।

सामने के तरफ हमें कार्न फ्लैस दिखाई दे रहा है केलॉगस चौकोज दिखाई दे रहा है और एक छोटा सा चिंगम का डब्बा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी पार्किंग जगह का दृश्य है।

इसके ऊपर कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

उसके ऊपर हमें कई सारे बल्टिया रखी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की तरफ एक उजले रंग की कुर्सी दिखाई दे रही है।

रोड के बगल में बहुत सारे दुकान भी लगे हुए हैं।

उसके पीछे हमें जीएस क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं जो अपने क्रॉस पे लटके हुए हैं।

सामने के तरफ हमे दो स्कूटी लगी हुई दिखाई दे रहे है स्कूटी के आगे एक बाईक लगा हुआ है।

नल के ऊपर बहुत सारे वायर लगे हुए हैं।

जिस पे लिखा हुआ है कुक हेल्दी ईट हेल्दी ।

सामने के तरफ करकट बिछा हुआ दिखाई दे रहा--

सामने के तरफ हमे लकड़ी के डब्बे बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें हिरन का खाना रखा हुआ है।